मुझे इस चित्र में एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र मे एक रूम दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक गार्डन का चित्र दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे मिठाइयां भी रखी--

जिसके नीचे कुछ लोग भी खड़े हैं।

बहुत सारी बाईके दिख रही है।

कुछ बाइकों का कलर रेड ब्लू और ब्लैक है।

मंदिर गोल्डन पिंक और रेड कलर का है।

मुझे इस चित्र में ए_टी_एम दिख रहा है जिसका नाम कब ए_टी_एम है।

यहां पर वाइट कलर की चेयर भी है।